कुछ तोते दिख रहे है। तोते ग्रीन कलर के दिख रहे है और काफी सारे बैठे हुए दिख रहे है डाली के ऊपर बैठे हुए दिख रहे है और यहाँ पे एक जाली लगी हुई दिख रही है जाली ब्लैक कलर की दिख रही है।

इसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए दिख रहे हैं कुछ गो गोभी रखी हुई दिख रही है कुछ केले रखे हुए दिख रहे है कच्चे केले हैं और यहाँ पर कुछ तरबूज रखे हुए दिख रहे है जो ग्रीन कलर के दिख रहे है।

और किसी ने व्हाइट कलर की पहन रखी है| काफी परशन है| और यहाँ पर जो दीवार अलग-अलग कलर की पेंटिंग है कुछ व्हाइट कलर का ऊपर छत के ऊपर पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है।